उसके ऊपर में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बिरयानी महल लिखा हुवा है।

उसके आगे में पीला रंग का बोट दिखाई दे रहा है। बोट पे एक टायर दिखाई दे रहा है।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

बलून लगे हुवे दिखाई दे रहे है। दीवार पर लाइट लगी हुवी दिखाई दे रही है।

उनके उपर लाइट दिखाई दे रही है।

पटरी के उपर घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ आदमियों ने लाल रंग की टी-शर्ट पहन रखी है।

कुछ आदमियों ने नीले रंग की टी-शर्ट पेहेन रखी है।

उसके पीछे क्रोस का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक चेयर लगी हुई दिख रही है।

उसके आजू-बाजू दो पिलर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इमेज़ में मैदान दिखाई दे रहा हैं।

मैदान के आगे में दो फिसल पट्टी लगी हुई दिखाइ दे रही है।

इस इमेज़ में एक मिट्टी का रास्ता दिखाई दे रहा है।

आगे में बांझ के गेट बने हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज़ में सामने घास दिखाई दे रही है।

जिसके अंदर मछलियाँ दिखाई दे रही हैं।

जिसने पर्पल कलर की शर्ट पहन रखी है शर्ट में व्हाइट कलर के बटन दिखाइ दे रहे हैं ।

एक बड़ा-सा गेट दिखाई दे रहा है उसके बाजू में एक और गेट दिखाई दे रहा है ।

ऊपर में लाल रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर सफेद रंग से पंजाब नैशनल बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ।

इस इमेज़ में ज़मीन दिखाई दे रही है। ज़मीन ऊपर एक डस्टबिन रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में एक फोनपे का बार कोड दिखाई दे रहा है।

उसके आगे बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ दिखाई दे रहा है।